सामने एक मकान दिखाई दे रहा है। उसमें एक दरवाजा लगा है। उसका नंग रंग नीला है। दीवाल का रंग सफ़ेद है। बाउन्ड्री का रंग गेहुए कलर का है।

घनघोर बादल दिखाई दे रहे। बादलों के बीच में सूरज म्म धके हुए दिख रहे है।

एक बरामदा दिखाई दे रहा है बरामदे में फर्श है दो ई-रिक्शा खड़े हुए हैं साइड --

लोग शर्ट पहने हैं उसका रंग सफेद है काला काली-काली जमीन है कुछ पीली-पीली है।

एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन की बाउंड्री वॉल है बाउंड्री वॉल सफेद कलर की है।

एक सड़क पर ई-रिक्शा है। ई-रिक्शा का रंग हरा है।

सड़क है ऊपर आसमान है एक खंभा है।

सामने लोहे के जाल दिखाई दे रहें हैं | कुछ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है | आसमान लाल दिखाई दे रहा है ।